इस फोटो में बहुत सारी रिंग्स दिखाई दे रहे हैं ।

बहुत दूर बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

सारे लोग योगा कर रहे हैं।

टेशन दिखाई दे रहा है।

फ्रेम दिखाई दे रहा है।

ब्रिज दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में हमे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

एक घर दिखाई दे रहा है।

इलेक्ट्रिक पोल दिखाई दे रहा है।

दो लोग दिखाई दे रहे हैं।

लेफ्ट साइड में रेड कलर का वॉल दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में नदी दिखाई दे रही है।

एक इंस्ट्रूमेंट में पिंक कलर का कपड़ा लटकाया हुआ है।

कुछ लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे है।

योगा मैट्स दिखाई दे रही है।

ट्रीज दिखाई दे रही है।

ग्रास दिखाई दे रही है।

बहुत सारे लोग नजर आ रहे हैं।

एक कारपेट दिखाई दे रहा है।

बिल्डिंग के सामने बहुत कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं।

टेबल दिखाई दे रहा है।

ए_सी दिखाई दे रहा है।

बहोत सारे मटके दिखाई दे रहे रेड येलो कलर के।

एक का कलर ऑरेंज दिखाई दे रहा है।

दो कार दिखाई दे रहे है एक का कलर व्हाइट एक का कलर रेड नजर आ रहा है।

पर्दे दिखाई दे रहे हैं।

बिल्डिंग का वॉल में ग्रीन एंड व्हाइट कलर का नजर आ रहा है।